लाइटें जल रही है पंखा दिख रहा है।

अलग अलग तरीके की चूड़िये बैठी है इनकी पीली चोंच चमक रही है।

लाइटे जल रही है बल्फ लटके हुए हैं।

गड्ढे दिख रहे हैं बॉले दिख रही है।

घर दिख रहे हैं आसमान दिख रहे हैं।

जहां पर डॉक्टर जानवर को देख रहे हैं।

अब नीचे कपड़ों की दुकान दिख रही है।

बड़े बड़े तो दिख रहे है आसमान दिख रहा है।